यहाँ एक पेट्रोल पंप नज़र आ रहा है जिसमें पेट्रोल पंप की छत दिखाई दे रही है उसका रंग सफेद नज़र आ रहा है।

यहाँ एक गार्डन दिखाई दे रहा है जिसमें हरि-हरि घास नजर आ रही है पीछे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग का--

एक लड़का फोटो लेता हुआ नजर आ रहा है उसने नीले रंग का एक टी- शर्ट --

यहाँ एक नवीन पंचायत भवन दिखाई दे रहा है जे--

दे रहा है दीवार पर कुछ तस्वीर टंगी हुई नजर आ रही हैं।

यहाँ एक पानी का तालाब नजर आ रहा है जिसमे पानी भरा हुआ है पानी का रंग सफ़ेद नजर आ रहा है।

इसके जमीन नजर आ रही है जमीन का रंग भूरा दिखाई दे रहा है सामने एक दिवार नजर आ रही है उसपर--

यहाँ एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है इसमें पानी भरा हुआ है पानी का रंग नीला नजर आ रहा है आद --